सामने जमात हो रही है लड़की लड़कियाँ कुर्सी पर बैठी है लड़कियो ने।

और खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है।

बड़ा ब्रिज के पीछे दरवाज़ा है काले रंग का।

एक तरफ बच्चों के झूले हैं।

ट्रक आ रहे हैं कुछ हरे हैं कुछ खश्क हैं.

तस्वीर में घर नजर आ रही है घर के अंदर --

शर्ट पहनी हुई है कार पत्थरों से बनी हुई है ऊपर सबसे नजर आ रहा है।